दीवार पर टी शर्ट और अन्य परिधान व्यवस्थित रूप से टंगे हुए हैं।

दीवार पर सुंदर वॉलपेपर लगा हुआ है और सिरहाने के दोनों तरफ साइड टेबल रखी गई है।

इस तस्वीर में एक घाट का दृश्य नजर आ रहा है जहां एक प्रमुख मंदिर दिखाई दे रहा है।

ये एक भव्य मंदिर की तस्वीर प्रतीत होती है।

वस्तु किला पारंपरिक भारतीय मंदिरों की शैली में बनी गई है।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसका नाम सुगंध है।

कपड़े अलग अलग रंगों और डिजाइनों में मोड़े हुए हैं और उन्हें श्रेणियां में बिठा गया है।

कोई कैफ़े या छोटे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ लगता है यहां नारंगी रंग की टेबल और कुर्सियां हैं।

इस तस्वीर में एक रिसेप्शन क्षेत्र दिखाई दे रहा है जो संभवतः किसी होटल अस्पताल या काजले का हो सकता है।

इस दृश्य में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसमें गुलाबी और सफेद रंग की इधन डिस्पेंसर लगे हुए हैं।

उंगरा भाग में सफेद फूलों वाले पौधे हैं जो झाड़ियों और घास के बीच उग रहा है।

चारों ओर हरियाली और मैदान घास से ढका हुआ है।

छे कुछ पेड़ और लोहे की बाउंडी नजर आ रही है।

तस्वीर में एक नर्सरी का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां विभिन्न प्रकार के हरे भरे पौधे और फूलों की गमले दिख रहे हैं।